यह एक अमम वाटर पार्क की पिक्चर है जहा पे कुछ लोग पिक्चर क्लिक करवा रहे है पीछे स्टैचू बनी हुई है जहा से वाटर फॉल हो रहा है।

ये एक खुला एरिया है जहा पर एक तालाब है।

ये-- एक बिल्डिंग है एएअ जिसपे कु दो चार फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे कुछ दुकानें हैं।

यहाँ कांउटर लगी हुए है कुछ क्लोथ्स जो हैं वो टांगे हुए हैं शो के लिए।

यह एक कपड़े की दुकान है जिसमे अअ ए लड़कों के जो पैंट शर्ट के कपड़े होते है वो अवेलेबल है इस दुकान मे कलर फूल कपड़े अवेलेबल हैं शर्ट के और पैंट शर्ट वागेरा भी हैं।

और हैंगर मे टंगी हुई भी है शो के लिए और कुछ कुर्ते हैं और ब्लेज़र वगेरा भी लगी हुई है यहाँ पर जीन्स भी है ।

यह एक ब्लैंकेट की दुकान है जहाँ पे ठंडी की चींज़े लगी हुए है ब्लैंकेट लगे कलरफुल ब्लैंकेट है।